भगवान यह कहता है कि जियो तो ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन हो।

तो आप बता सकते हो क्या कि आप के साथ क्या व्यहार किया जाए।

युद्ध में हनुमान जी और श्री राम जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे यहां पर एक पेंटिंग है जिस--

यहां पर बहुत ही सुखद और शांति मई कहानियां लिखी गई है।

राम जी कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनमें मोह माया यहां पर बहुत सारे कुरकुरे पड़े--

तो मै इस बात से बेफिक्र होता हूँ और हमेशा इस बारे में सोचता हूँ।

तो खुद आप अपने आप का नुकसान करेंगे और बहुत सारो का नुकसान करेंगे।

तो आप यहां पर कटिंग की दुकान है और कटिंग की दुकान ऐसे की जा रही है ये जैसे यहां पर सैलून है।

कि यह क्या है जिसे हम नहीं जानते हैं आप क्या इसके बारे में कुछ ऐसा कहोगे?

की यहां क्या है? जिसे देखकर आप दुनिया की हर चीज बता सके--